यह एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं बिल्डिंग का कलर सफेद और पीले रंग का है।

धराते हैं और सारा दिन यहां पर--

पैलेस जैसा दिखाई दे रा है।

इससे मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आने में असानी होती है।

इसमें बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं।

रा है जिसमें बहुत सारे लोग गाने सुनकर नाच सक--

देखने में घर बहुत अच्छा और अच्छा ही सुंदर लग रहा है देखने में तो क्या--

ये एक कार्ड जैसा लग रहा है।

रिंग हैं क्या कह सकते हैं जैसी भी हैं अच्छी है।

वो हो शादी हो री है सारे ख़ुशी मना रहे हैं।